और बाहर दोनों आजू-बाजू साइड में दुकान लगी हुई है जिसमें बहुत सारे लोग कुछ समान खरीदी कर रहे हैं बहुत सारे जूते चप्पल रखे हुए हैं मंदिर अच्छे-अच्छे गुम्बज बने हुए हैं।

इस इमेज में तीन साइकिल दिख रही हैं एक ऑटो सवारी से भरा हुआ है एक बाइक आ रही है दो लेडिस रोड क्रॉस कर रही है एक लेडिस रोड पे जा रही है।

तोरायां लगी हुई है आस पास खुला आसमान है हरे रंग के घास लगे हुए है एक पेड़ लगा हुआ है एक साइड मे एक बिल्डिंग है।

इधर एक नाव डूबी पड़ी हुई है | पानी के नदी मे एक पेड़ की छाया दिख रही है | खुला आसमान है।

व्हाइट कलर का बोर्ड रखा हुआ है | एक साइकिल रखी हुई है पलंग हुआ एक कुर्सी रखी हुई है | सर कुछ समझा रहे हैं | बहुत सारे बच्चे चटाई पे व्हाइट कलर की चटाई पे बैठे हुए है | एक मैडम खड़ी हुई है एक बच्चा नंगा खड़ा हुआ है।

एक अंकल है जो पर्चा लेकर खड़े हुए है दो अंकल पर्चा ले कर खड़े हुए हैं एक भाई साहब स्वेटर पहने हुए है एक भाई साहब टेबल उठा कर कुछ देख रहे है डॉक्टर जो है रेड कलर से पेन से कुछ लिख रहे है।

वहाँ स्टेशन के पास खड़े हुए है बहुत सारे सवारी गाड़ी अ-अ-म-म रिक्शे पे बैठ रही है | एक अंकल जी रोड क्रॉस कर रहे है एक झण्डा लगा हुआ है अपने भारत का |

गाड़ी जो है एक उसके उ अ पाइप के ऊपर टंगी हुई है लड़का गाड़ी को धो रहा है टोपी पहने हुआ व्हाइट कलर की शर्ट पहना हुआ है ब्लू कलर की पेंट पहना हुआ है चप्पल पहना हुआ है पाइप से वो धो रहा है।

इस इमेज मे दिख रहा है कि एक फोटो खींच रहे है जिसमे बहोत सारे बच्चे लाइन से खड़े हुए है एक साथ जो रेड कलर के कुर्सी पर बैठे है वो शायद बिस्किट बाँट रहे है।

नीचे कुछ पेपर रखे हुए हैं एक चश्मा रखा हुआ है अंकल जो है भाई साहब जो है मोबाईल रखे हुए है जेब मे।

इयरफोन ब्लूटूथ लगाया हुआ है | पीछे जो है की दीवार दिख रही है ब्लू कलर की लाइट जल रही है कुछ ग्लास रखे हुए हैं ।

इस इमेज को देख रहा है ये क्या ये-ये इधर पे दिख रहा है की एक बोर्ड पे लिखा हुआ है अनमोल इसपे बहुत सारा दही पनीर मनीर रसगुल्ला गुलाब जामुन सब लिखा हुआ है।